तथा यहां नीचे फ्लोर में मैट अच्छा बिछा हुआ है।

के इसमें बोहोत सारे मॉडल रखे गएं--

ये कोई प्राचीन तरह के बनाए गए--